ये एक ढाबे की तरह नजर आ रहा है यहां पर लोग खाना खाने आते हैं इसकी दीवारें ऑरेंज रंग से रंगी गई है।

और येह सीधा जा रहा है नीचे चोकोर डब्बों में फर्श हैं।

और नीचे फर्श लगा हुआ है जिस पर लाइट चमकती हुई नजर आ रही--

इसमें एक बहुत बड़ा एंट्रेंस दर्शाया गया है एंट्रेंस के अंदर एक कांच का इंटर करने के लिए --

पोस्टर दिखाया गया है और एक मकान की फोटो भी नजर आ रही है जो की कई कलर में बना हुआ है।

दुकान है जहां पर आइसक्रीम कॉफी और भी बहुत कुछ मिलती है यह सेटअप बहोत ही अच्छा लग रहा है अमूल का है।

इसमें एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसकी गुंबद लाल कलर के हैं उसके सामने काली और सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है।

और फर्श पर लकड़ी के बॉक्स बनाए हुए रखे हुए हैं।

रोशनी आने के लिए चद्दर लगा रखे हैं और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नीचे आने के लिए सीढ़ियां भी है।

ये एक कारखाना की तरह नज़र आ रहा है जिसमें दो व्यक्ति काम कर रहे है ये कारखाना काफी अच्छी तरीके से सेटअप --

यहां पर एक नीले रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है जो कि ऐसा लग रहा है एक अस्पताल है जिसके बाहर एक बाइक खड़ी है।

इसमें कूलर की पंखुड़ियां नजर आ रही है ऐसा लग रहा है की कूलर की पंखुड़ियां --